यहां कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो बैडमिंटन खेल रहे हैं।

नाव में दो झंडे दिखाई--

चार चक्के के टायर रखे हुए हैं।

पास गेट के पास एक ग्रीन कलर का डब्बा है।

यह एक बस के अंदर का--

सीट पे ब्लू कलर का कोभर लगा हुआ है।

और बनाना मैंगो रखा हुआ है।

ब्लैक कलर का बैग लगाया हुआ है।

मछली का दुकान है ज--

एक लैब है जिसमें कुछ कुर्सी लगा हुआ है।

लोग खड़े हैं जो खेल रहे हैं यहां--

इसके पास कुछ दवाइयां रखी हुई हैं।

इसके बगल में एक पेड़--

एक फीस का दुकान है जहां एक--